बैठे हुवे हैं और कुछ खड़े हैं जिसमे की एक --

और बगल से इसके सीढ़ी गई हुई है और सामने एक --

सामने एक दो आदमी हैं जोकि एक बैठा हुवा है बाइक पर और एक खड़े है।

स्टील रंग की रेलिंग लगी हुई है जिस --

ये आप सामने देख रहे है प्रबंध कार्यालय है।

हरे रंग की काई लगी हुई है ऊपर और इधर --

सामने आप देख रहे हैं एक झोपड़ी हैझोपड़ी --

देख रहे ये एक सब्जी मंडी है जहाँ पर --

आ यहाँ पर बहोत सारे टी.बी. रखी रखी रखी गई हैं बड़ी-बड़ी --

कुछ खाना खाने का रखा गया है सामान जिसमे की --

आ हैं यहाँ पर और कुछ बैठे हैं कुछ खड़े हैं और --

और लाल और यहाँ पे सामने दिखरे एक काले कलर का एै व्यायाम जैसा अ --

सामने आप देख रहे हैं बहोत बड़ा सा हॉल है इसमें बहोत सारी कुर्सियाँ लगी हैं।

और उपर ऐ_सी लगी हुई हैं और यहाँ पे बहोत सारी लाइट्स लगी हुई हैं।

हर एक कपडे़ चपोत के रखे गए कुछ टंगे है।

जीन्स स्कर्ट रखे हुआ है और जींस पैंट रखे हुए हैं।

लगी हुई हैं और कुछ यहाँ पे आदमी खड़े हैं जोकि --

और सामने कुर्सी रखे हुए है। कुर्सी के बीचो बीच टेबल रख --

सामने आप देख रहे हैं बहोत बड़ा सा मैदान है जिसमें की कुछ --

और सामने देख रहे हैं बहोत बड़े-बड़े पेड़ हैं और उपर आसमान का रंग --

त बहोत बडा सा टेबल रखा हुआ है बगल में खिड़ --

और यहाँ पे प्लास्टिक के बोरे है और सामने देख रहे है आप --

की पत्ता गोभी और बैगन रखे हुये हैं।